और इस बिल्डिंग के बाहर मुझे बोहोत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक फूलों की दुकान नजर आ रही है।

तथा बहुत सारे बच्चे टेबल्स पर बैठे हुए हैं और अपनी प्रायोगिक परीक्षाएं दे रहे हैं।

इस चित्र में दिखाया गया दृश्य मुझे किसी सड़क के किनारे लगे हुए सब्जी मार्केट का लग रहा है।